खेत है खेत पेक टैक्टर है। टैक्टर मे--

कमरा है इस कमरे में पलंग है पलंग पे गद्दा है गद्दे पे पिंक कलर की चादर है तकिया है कंबल रखा है लाल कलर की वॉल पुती हुई है।

खिड़की दिखाई दे रही है सड़क दिखाई दे रही है घास लगी हुई है पेड़ लगे हुए हैं।

ये फूल की दुकान है गुलाब के फूल दिख रहे हैं लाल रंग के --

समाधि लगी हुई है गोल्डन रेलिंग्स हैं उस पे --

कुछ प्लांट्स लगे है जिसमें फूल है रेलिंग है।

कमरे में एक पलंग है पलंग पे गद्दा है गद्धे पे चादर --

ऐ एक बावड़ी है बावड़ी के ऊपर कुछ पत्थर पड़े हुए उसपे एक आदमी खड़ा हुआ है।

मोटरसाइकिल खड़ी है एक कैरेट रखी हुई है बांस की बल्ली से बंधा हुआ है।

एक मेटाडोर खड़ी हुई है कार दिखाई दे रही है।

दुकान है दुकान के अंदर अगरबत्ती रखी हुई है अलग अलग तरह की --

आकाश दिख रहा है कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं एक बाइक भी नजर आ रही--

एक व्यापारी बैठा हुआ है साइड में उसके लहसुन रखा है उसके ऊपर वाली परात में भी लहसुन रखा हुआ है।

साइड में भी लाल रंग की खूब सारी चेयर्स रखी हैं पर्दा लगा है पर्पल रंग का --

एक टेबल के ऊपर दो मग में काफी रखी हुई है एक में स्पून डला हुआ है एक स्पून साइड से रखा है कुछ शुगर ऐडेड --

चेयर रखी हुई है लाइट का स्विच है पर्दे टंगे हैं।

साइड में पेड़ दिख रहा है लाइट जल रही है।

जिसके बीच में से साफ साफ आसमान दिखाई दे रहा है।

जैकेट पहना है कैप पहना हुआ है दूउउउर से --

एक आदमी खड़ा है ब्लू जींस और वाइट गरि जैकेट पहने हुए --

सुपर कार्केट में कुछ कंटेनर्स के अंदर एक चने भरे हैं चावल भरा हुआ है।

दूर पे एक एक्टिवा है एक लेडी खड़ी हुई है उससे दूर पे एक --